दे एक घर दिख रहा है जोकि पीले कलर का है दे एक दुकान दिख रही है ए यस चाय सुट्टा पिरन ते हुए पीने की जगह है।

बोर्ड का कलर नीले कलर का है जिसमे लिखा हुआ है सहायक अभियंता मतलब के एंजिनीयर ।

एक लड़के ने हरी शर्ट पहनी हुई है एक ने पर्पल । आसमान दिख रहा है | खिड़कियां लगी हुई हैं | सोलर पैनल लगे हुए हैं।

ब्लू कलर का होर्डिंग लगी हुई है जिसमें चिकन के मस्त मस्त पीस बने हुए हैं लेग कबाब सबके पास गाड़ियां खड़ी हुई है सइकिल खड़ी हुई है।